जो साफ तरीके से दिखाई नी दे रा और हम देख सकते है एक टेबल भी रखी हुई है आपको ये एक कुर्सी रखी है एक सीढ़ी भी रखी हुई है।

एक्टर्स के फोटो लगी है हेयर स्टाइल्स के फॉरेन कट के फोटो लगी और हम देख सकते दीवार के सामने दो ए_सी लगी हुई है।

और हम देख सकते हैं बिल्डिंग के अंदर का बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है।

ये एक सब्जी की दुकान दृश्य दिखाया गया है इस फोटो में जहां पर एक व्यक्ति है जो सब्जी फल फ्रूट का सेल कर रहा है इस दुकान का नाम मां मां चंद्रलाल--

ये दुकान की अन्य ओल्ड स्टोल की है जहां पे हार्डवेयर का सामान बेचा जाता है जैसे प्लास्टिक की पाइप लोहे की पाइप और कुछ अन्य ऐड वेयरिंग सामान।

एक दीवार बड़ी दीवार बनाई और दीवार के पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे लाइटिंग के--

दवाईयों पर छूट मिलती है वहीं पर जैसे रात की फोटो ली गई है और बहुत सारे व्यक्ति हैं जो दो पहिया वाहन लेकर आके यहां खड़े हैं और इसके आगे पार्किंग की व्यवस्था की गई है जिससे कि दो पहिया वाहन यहां खड़े कर रखे हैं।

यहां से हमें गौर करने से पता चलता है कि रूद्र इंजीनियर कॉलेज के पीछे की एक टावर दिखाई दे रहा है और मरुधर कॉलेज इंजीनियर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके आगे बहुत सारे पेड़ हैं।

ये एक म्यूजियम के पार्क की फोटो दिखाई गई है जहां हम देख सकते है की एक अशोक चक्र बना हुआ है जो बीचों बीच है इस पार्क की ओर उसके चारों ओर एक बाउंड्री बनी और --

और वहां यहां बहुत सारी टीवीयां हैं एल_ई_डी एंड कंप्यूटर भी रखे हुए हैं।

और आम देख सकते हैं बीच के मैदान में एक पानी की टंकी की दिखाई दे रही है पीछे की तरफ है शो का पौधा दिखाई दे रहा है और सामने बहोत बड़ा गार्डन दिखाई दे रहा और --

टेबल कदे लगे हुए हैं और पीछे की तरफ देखने में पता चलता है कि लाल कलर की साड़ी भी टंगाई दे रही है हमे --

और सामने की तरफ देखना पड़ेगा कि पिछले एक टब में बहुत सारी छोटी मछलियां भी लिए बैठाए हुए हैं।

ये एक मुर्गी फार्म की फोटो है जिसमें हम देख सकते हैं बहोत सारी मुर्गियों को पिंजरों के अंदर रखी गई उसको खाने देने के लिए व्यवस्था की गई है जहां पर हम दे सकते है मुर्गियां --

ये एक मुर्गी फार्म बहोत बड़ा फॉर्म है जिसके अंदर जिसकी लंबाई बहोत सारी है और इसके ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और बाहर की तरफ एक --

कपड़े के शोरूम के अंदर डमी की फोटो दी गई है जिसमें महिलाओं की डमी रखी है पीछे के दो डमी और दिखे है जिसने --